कुछ मौसमी दिख रहें हैं।

कुछ लोहे के सलाख दिख रहे है।

कुछ लाल रंग के तो कुछ थोड़े हीरे रंग के हरे रंग के दिख रहे है।

ये देखो कुछ बाहर फर्ची लगी हुए हैं फर्चियों का रोड है।

कुछ सामान दीवाल को अड्काया हुआ है।

आजू-बाजू में देखो दीवार दिख रही है सीमेंट की दीवार है।